खिड़की पे परदे लगे हुए दिखाई दे रहें हैं।

उसके आगे में रास्ता दिखाई दे रहा है।

रास्ते के ऊपर कुछ घास लगी हुई दिखाई दे रही है।

सामने में घर बना हुआ दिखाई दे रहा है।

सीढियाँ दिखाई दे रही है।

उसके सामने में वैन दिखाई दे रही है सफ़ेद रंग की।

इस इमेज में सामने एक बड़ा सा घर बना हुआ दिखाई दे रहा है।

आजु-बाजू में कुछ पेड़-पौधे लगे हुए दिखाई दे रहें हैं।

बड़े पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है ।

पेड़ लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

बिजली का खम्भा दिखाई दे रहा है।